और सभी जानवर यहां पर आते-जाते रहते है सुबह शाम के टाइम ।

कांच लगा रहे हैं |

यह दृश्य एक जिम का है |

यह एक औथोराइज मीटिंग द्वारा --

अधुरा है इसमें कोई रंग वैगरा नहीं है उपर वाले में नीचे वाले का रंग नीला है।

शोप का है शोप में अनेक-अनेक प्रकार के फुल लड़ी गमले --

लगाये गई है ये सब आर्टिफिशियल गमले हैं।

बहुत ऊँची और बड़ी है |

यह बहुत पुराना कारखाना है जहाँ पर --

इसमें ओन्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकते हैं |

शिवनानन्द है जो की एम.डी. जर्नलिस्ट --

झूले लगाये हुए जो कि ऊपर से नीचे की ओर घिसड़ते हुए --

झुंड नजर आ रहे हैं |

चेस्ट पर सिक्स पैक दिखा रहा है जो की इसे लगता है ये बहुत खुश है।